पीछे ऑरेंज कलर की दीवार दिख रही है काले रंग का दरवाजा दिख रहा है।

एक पानी की बोतल कुछ गिलास भी रखे हैं।

और सफ अ यहां पर क्या कहते हैं? दिन का समय है।

और आसमान दिख रहा है यानी कि दिन का समय है।

अ यहां पर दो स्विच बोर्ड है ब्लैक कलर के चेयर्स लगी हुई हैं काफी सारी।

और एक ए_सी दिखाई दे रहा है ऊपर लाइट्स भी लगी हैं।

और लिखा हनुमान टायर्स ठीक है।

फॉरेस्ट अच्छा जो ये फॉरेस्ट का फोटो है।

दो गेट लगे हुए हैं यहां पर जो की लाल रंग के है।

पीछे काफी सारे पेड़ दिखाई दे रहे--

और एक नंबर और लिखा है सेवेन जीरो डबल फोर डबल फोर सिक्स जीरो सेवेन फोर ।

साइकल दिख रही है और रात का समय हमें दिख रहा है ना तस्वीर में--

कुछ यहां पे पेड़ पौधे दिख रहे हैं और एक बोर्ड लगा है पार्किंग का और कुछ लोग पीछे की तरफ खड़े हैं और यहां लिखा है प्रस्थान।

और यहां पे किंडर जॉय फाइव स्टार सारी चॉकलेट दिखाई दे रही है ठीक है।

इस फोटो में न सामने एक बोर्ड लगा है लिखा है शाहवान ऑटो वर्कशॉप ।

अह डेटिंग पेंटिंग का कार का ए_सी वॉशिंग मशीन आदि का काम तसल्ली बख्श किया जाता है ठीक है।

और एक लड़का बैठा है जो की सबसे आगे चल रहा है ठीक है।

यहां पर थोड़ी बहोत मिट्टी दिख रही है छोटे मोटे पेड़ पौधे दिख रहे हैं न--